आसमान दिखाई दे रहा है आस और बिजली की तारें दिखाई दे रही हैं।

शॉप में बहुत सारी साइकिल दिख रही है।

और दीवार में ट्यूबलाइट दिख रहीं हैं स्विच बोर्ड दिख रहा हैं।

यहां पर बहुत सारे टी मग दिखाई दे रहे हैं कॉफी मग दिखाई दे रहे--

दीवार दिखाई दे रही है दीवार पे ए_सी दिख रहा है और कैमरा दिख रहा है।

यहां एक रैट दिखाई दे रहा है।

इसके ऊपर शेरा इनर लिखा हुआ दिखाई दे रहा है।

चेयर के ऊपर एक जॅकेट रखी हैं जिसका कलर ब्राउन हैं।